यहां बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हे बाइक है ओर एक इंसान जो की अपना माथा बाइक पे टेक हुआ है ।

यहाँ पस एक बाइक लगा हुआ है बाइक के ऊपर टायर रखे हुए हैं उसके अगल-बगल बाहर में बॉंस रखे हुए हैं ऊपर में और उसके नीचे दीवालों के दोनों साइड --

यहां पर बहुत अच्छी प्यारी बहती हुई पानियाँ दिख रही हैं जिसमें कोई नाव नही है बीच में कुछ पत्थर हैं।

पर कुछ पौधे दिख रहे है छोटे-छोटे दूर में और कुछ पेड़ भी है कुछ दूर पे पर एक पो- पोल ब्रिज जैसे बनाया हुआ है।

ओर उसके उधर पेड़ दिख रहे है और यहाँ बस कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है छत पे कुछ छड़ दिखाई दे रहे है और छत अच्छे से और नीचे बिल्डिंग फ़िनीसिंग नहीं है अच्छे से।

यहाँ पास एक सजगह दिख रहा है ग्राउन्ड जैसा जिसके सामने पानी की टंकी है और छोटा छोटा घर दिख रहा हैं।

सारे मशीन है और यहां नीले कलर की भी कुछ बॉक्स जैसा बना हुआ हैं।

पे हरे कलर की मशीन है जो की बंद है चल नहीं रही है और इसके ऊपर मे कुछ लोहे का बनाया हुआ है।

ऊपर से झाने के लिए इसको कर्कट से और यहा बस कोई व्यक्ति नहीं है और बाहर की और बहुत लाइटिंग है नीचे सांप है।

और यहाँ पास की जगह साफ-सुथरा है बहुत अच्छा हैं।

यहां पे बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है लेकिन यहां पे ये मशीन चल नही रही है।

क्यूंकि कोई यहां चलाने वाला है नही कोई व्यक्ति यहां दिख नही रहे हैं ऊपर से हल्की पीली कलर की लाइट आ रही है और ये करकट से छाया हुआ है और जगह नीचे साफ है।

और पीछे की और का दीवाल नारंगी कलर का है और उसके नीचे में व्हाइट ब्लैक ग्रे कलर का है बॉक्स जैसा बनाया हुआ है।

यहां माताएं की मूर्तीया है जहां बस नीचे दीपक जल रहे है ऊपर मे कुछ लटकाया हुए है बना बनाकर के हाथों से रंग बिरंगे से --